यहां लोग आइसक्रीम खाने आते हैं।

झीलों के आगे कुछ पानी भी नजर आ रहा है पीछे बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं।

इस पिक्चर में बहोत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में एक मल्टी नजर आ रही है मल्टी के उस पार कुछ कार खड़ी है मल्टी बहोत बड़ी है।

और कुछ बाइकें भी खड़ी हुई हैं रोड पर से एक ब्राउन कलर की कार निकलकर जा रही है।

ज्वेलरी कांच के शौकेज में पेक है।

इस पिक्चर में एक बस स्टॉप नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में एक मोल नजर आ रहा है।

एक आदमी स्टेशनरी के अंदर बैठा हुआ है।

बम काफी तेज जल रहे हैं।

रानी कमलापति स्टेशन बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है।

इस पिक्चर में एक यूनिवर्सिटी नजर आ रही है।

डॉक्टर्स मार्क्स लगाए हुए हैं।

साइड में एक खंबा भी है।

इस पिक्चर में एक मस्जिद की दीवार नजर आ रही है।

उसका दरवाजा खुला है और जो सामने प्लाट नजर आ रहा है ।